बात कर रहा एक व्यक्ति मार्क्स लगा के सामने खड़ा हुआ है।

टी शर्ट में खड़ा सामने बहुत सारी लोहे की--

इस इमेज में एक नदी दिख रही जिसके किनारे पे एक बड़ी सी बोट खड़ी है उसेपे दो व्यक्ति खड़े हुए फोटो शूट कर रहे--

इस इमेज में पीछे एक विशाल सा पहाड़ दिख रहा है जिसको लाइट --

ज जगह दिख रहा है जहां पे एक सफेद कार खड़ी है पास में कुछ और भी व्ही--

कुछ लोहे के छड़ पड़े हुए है सा--

इस इमेज में हेलमेट की संख्या जैसी कुछ लोहे की वस्तुएं देख रहे हैं जो कि किसी एक--

कुछ फोन के कवर के पोस्टर लगे हुए हैं।

व्यक्ति के पीछे सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं।

नीचे के तरफ घर को व्हाइट कलर से पेंट किया गया--

इस इमेज में एक छोटा सा बैंक दिख रहा है बैंक के बाहर--

इस इमेज में एक हॉस्पिटल का रूम दिख रहा है जिसके अंदर एक डॉक्टर एक नर्स खड़े कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं।

अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने ऊपर एक सी_सी_टी_वी कैमरे दिख रहा बग--

पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

बहोत सारे बच्चों की टॉयज दिख रही है।

सा पोस्टर लगा हुआ है सामने एक व्यक्ति लोअर टीशर्ट ।

इस इमेज में एक शॉप दिख रहा है शॉप के अंदर बहोत सारी लोहे की पट्टियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें कुछ लकड़ी की समान है नीचे गिरे हुए कुछ व्यक्ति सजावट करते हुए दिख रहे हैं।